जो की दिखने में बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है जो की छात्र बुक कर्नल है मेंन बजार हसनगंज और यह दिखने में बहुत सुन्दर है इसको देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं ।